ऑटो दिख रही है फॉर व्हीलर वाहन दिख रही है टू व्हीलर वाहनें दिख रही है बड़ी-सी रोड दिख रही है आई सेड बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिख रही हैं।

दो ठो फ्लैक्स दिख रहें हैं एक ब्लैक कलर का बॉक्स ऑफिस लिखा हुआ बोर्ड दिख रहा है ऊपर साइड कैमरा दिख रहा है।

सा मंदिर दिख रहा बंदर का बाजु एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग खिड़कियाँ दिख रही है मंदिर की म-मीनार दिख रही है निचे साइड कुछ सटके दिख रही है मंदिर के

एक छोटा सा मकान दिख रहा है जिसमें दरवाजा दिख रहा है एक डबल मंजिल की कुछ बिल्डिंग दिख रही है जिस में मीनार दिख रहीं है तीन ठो दरवाजे दिख रहें हैं हरे-भरे झाड़ दिख रहें हैं आसमान --

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग मे खिंडकियाँ दिख रही हैं खिड़कियों के ऊपर रॉडे दिख रही है दीवाल की बाउंड्री दिख रही है बाउंड्री के अंदर छोटे-छोटे हरे-हरे कलर के पौधे दिख रहे हैं बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं हरे-भरे।